व्यक्ति खड़ा हुआ है बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है साइड मे एक गाड़ी एक बाइक खड़ी हुई है।

शैम्पू के पाउच रखे हुए दिख रहे है आगे लाइट दिख रही है।

यह एक बसंत डेयरी फार्म दिख रहा है।

इधर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं दो बामूल खड़े लगा रहे हैं।

आसपास पेड़-पौधे लगे हुए हैं घर के साइड में भी पेड़ लगा हुआ है।

दो दो एक झोंपड़े में बेनर लगा हुआ है।

ये चाँदनी इंजीनियर वर्कशॉप दिख रही है।

सलवार रखे हुए हैं नीचे प्लास्टिक की पॉलिथीन में भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

एक खिड़की के वहाँ पे एक डमी रखी हुई है उसने पेंट शर्ट पहना हुआ है।